ये यहां पे देख सकते हो यहां पे ये लाइट दिख रही है।

मशीन वगैरह दिख रही है ये आदमी है इसने टोपी पहन रखी है यहां पे देख सकते हो--

ये यहां पे देख सकते हो एच_एल लिखा हुआ है फ्लोर बिल से फ्लोर से।

ये यहां पे देख सकते हो यहां पे हिरण दिख रहे हैं।

यहां पे ये दो औरतें भीग रही हैं और ये यहां पे गिलास वगैराह दिख रहा हैं प्लेट वगैराह रखी हुई है।